ऊपर सफेद छत दिखाई दे रही हैं बाहर एक छोटा सा ग्राउंड दिख रहा हैं आसपास हरे छोटे बड़े पौधे दिख रहे हैं बड़ा सारा हरा पेड़ नजर आ रहा हैं ।

एक गिटार पीला एवं काला है एक गिटार काला है एक गिटार लाल हैं।

सारी मशीनें काले कलर की पुती हुई हैं काले कलर की साइकिल जिम की दिख रही हैं जमीन इसके कथे कलर की हैं ऊपर ई क ई छत --

इस चित्र में बड़ा सारा एलोप्लेन दिखाई दे रहा हैं जो कि सफेद अथवा नीले कलर का है उसका गेट खुला हैं सीढ़ियां लगी हैं ।

उसके साइड में एक औरत वाइट कलर का टॉप गोद में एक बच्चे को लिए दिख रही हैं।

आस-पास दूर से बड़े सारे हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ बिल्डिंगें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं यह रोड सीमेंट का पक्का बना हुआ हैं ।

ये चित्र एक टी एक टी_वी की दुकान का दिखाई दे रहा हैं जहाँ पर दीवार पर काफी सारी एल_ई_डी टीवि याँ दिख रही हैं।

एक आदमी इस टी_वी को सही करता हुआ नजर आ रहा हैं ।

दुकान की दीवार का कलर गुलाबी दिख रहा हैं एक आदमी जो कि खड़ा हुआ हैं उसने हरी शर्ट और ब्लैक कैप दिख रहा हैं ।

ये चित्र एक रेस्टोरेंट का दिखाई दे रहा हैं जिसकी छत और दीवारें सफेद कलर से पुती हैं सफेद छत के ऊपर काफी सारी --

लाइटें लटकते हुए लेंटर्न जो कि सफेद और लाल हमें दिख रहे हैं छत पर लगे हुए गुब्बारे पीले एवं सफेद हमें दिखाई दे रहे हैं।

यह न्या यहाँ पे फर्नीचर में गुलाबी फर्नीचर है एक औरत काले कलर की शर्ट --

ये चित्र एक शोरूम अथवा ऑफिस का हमें दिखाई दे रहा हैं जहाँ पर बाहर गमले रखे हैं उसमें छोटे-छोटे से हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं ।

ये चित्र एक ब्यूटी पार्लर का नजर आ रहा हैं जहाँ पर दो बड़ी-बड़ी कत्थई कलर कुर्सियां लगी हैं और सामने दीवार पर बड़े सारे आयने लगे हैं।

ऊपर की ओर जाती हुई एक छोटी सी सीढ़ी दिखाई दे रही हैं जो नीले कलर की --

काउंटर सफेद कलर का है दुकान के ऊपर काफी सारे लटके हुए खाने-पीने--

महा लोन एक्सचेंज मेला दिखाई दे रहा हैं और एक और बड़ा बैनर हैं जिस पर टेस्ट राइड अवेलेबल यहाँ पे लिखा हुआ हैं ।

यहाँ पे मोटरसाइकिल एवं मोह पेट गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई दिख रही--

ये चित्र एक बड़ी सी इमारत का दिखाई दे रहा हैं जिसके पास एक आदमी काला कुर्ता --

हरी धोती सफेद कुर्ते में यहां पे दिखाई दे रहा है पीछे मस्जिद का मिनारा नजर आ रहा है आसपास काफी सारी भीड़ यहां पे इकट्ठा है।

बड़ी सारी बाल्टियां रखेगे जिसमें ऑयल एवं डीजल दिख रहा हैं जो कि नीले कलर की हैं।

बीच में इसके लकड़ी भी लगाई गई हैं नीचे सफेद बोर्ड एवं मशीन पड़ी पड़ी हुई दिख रही है एक आदमी इस गेट को पकड़े हुए नजर आ रहा हैं जिसने लाल टी-शर्ट पहनी--

ये चित्र एक क्लब का नजर आ रहा हैं जो कि शूटिंग क्लब हैं जहाँ पर शूटिंग सिखाई जा रही हैं ।

ये एक बड़ी सारी दुकान हमें दिखाई दे रही हैं दुकान के ऊपर ब्लैक कलर की होल्डिंग हैं जिसमें बेस्ट बाय-- -

ऊपर की और दो खिड़की दिख रही है जो कि काँच की हैं नीचे दुकान में आटा और काफी सारी --

यहाँ पे काफी किस्म के काले कलर के छोटे-बड़े टायर दिख रहे हैं साइड में लगा हुआ एक सफेद कूलर हमें दिखाई दे रहा हैं ।

ये चित्र एक बड़ी सारी मॉल की दुकान का दिखाई दे रहा हैं यहाँ पे काफी सारी जेंट्स की टीशर्ट शर्ट हमें दिखाई दे रहेंगे डमी पर एक काले कलर --

दिख रही हैं काले कलर की टेबल हैं बड़ा सारा कथाई काउंटर हमें दिखाई दे रहा--

ये चित्र एक बड़े सारे शॉपिंग मॉल का दिखाई दे रहा हैं जहाँ पर काफी सारी अलमारि यों में बिस्किट चिप्स जमे हुए नजर आ रहे हैं बड़ी सारी --

बाहर बड़ा सारा एक हरे कलर का पेड़ हमें इस चित्र में दिख रहा हैं।

यह चित्र एक कपड़ों की दुकान का दिखाई दे रहा है जहां पे काफी सारी बड़ी अलमारियां बनी है अलमारीयों के ऊपर--

काफी सारे कपड़े पन्नियों में पैक करे हुए हमें दिख रहे हैं बाहर बड़े सारे दो काउंटर बने हैं ।

इस चित्र में बड़ा सारा स्टैंड दिख रहा हैं जिसके ऊपर शेड हरे कलर का डला हुआ हैं ऊपर जाते हुए जीने आड़े तेढ़े दिखाई दे रहे हैं।

कथई कलर का ये पूरा पुता हुआ हैं आसपास केले के पेड़ दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे से --

एक व्यक्ति यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा हैं बड़े-बड़े सारे नीले स्टैंड यहाँ रखे --

आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं ये दुकान अथवा बाउंडरिं ग सर्किटों से सजी हुई--

ये चित्र एक होटल का नज आ नजर आ रहा हैं जहाँ पर शादी का कार्यक्रम चल रहा हैं ।

इसकी छत और पिलर काले एवं सफेद दिखाई दे रहे हैं काफी सारा सजा हुआ --

इस चित्र में बड़ी सारी मल्टी हमें दिखाई दे रही हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा हैं हरे हरे यहाँ पर पर्दे डले हुए हैं बाहर लकड़ी के--

तम्बू से ये बिल्डिंग बनाई जा रही हैं पास में ही सामने इसके रेत दिख रही हैं कच्ची जमीन दिख रही हैं।

कहीं कहीं घास दिख रही हैं एक व्यक्ति ईटे उठाता अथवा जमाता हुआ दिख--

ये चित्र एक सैलून एवं पार्लर का दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर तीन काले कलर की चेयर रखी हुई है सामने बड़े-बड़े सारे --

अ आईने दिखाई दे रहे हैं उसमें रखा हुआ काफी सारी कॉस्मेटिक का सामान दिखाई दे रहा हैं।

साइड में एक सफेद कलर का स्टेन दिखाई दे रहा हैं और बाल धोने हेतु यहाँ पे शॉवर अथवा सिंक --

टायर लटकी हुई थैलियाँ बाहर का नजारा बाहर एक छोटा सा पेड़ दिख रहा हैं।

इस स्टेज पर काफी सारी पीली एवं काली लाइटें दिख रही हैं बड़े-बड़े सारे--

ये स्पीकर यहाँ पर रखे हुए नजर आ रहे हैं सीढ़ियों से जाने के लिए इस स्टेज पर रास्ता हैं जमीन पर हरी घास दिख रही हैं ।

इस चित्र में बड़ी सारी दुकान है जो कि कपड़े की दिख रही हैं।

यहाँ पे अलग-अलग किस्म के कपड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वॉल पे सिंधरी पर एक माला रखी हैं ऊपर बहुत सारे पुट्टे में--

रखे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कपड़े अलग-अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं गुलाबी लाल पीला क्रीम नीला कलर के कपड़े देख--